एक बाजार है जहाँ बहुत भीड़ है बाजार में ढेर सारे कार आये टेम्पो हैं बस है।

नदी है नदी बहुत ही बड़े है नदी बहुत ही लंबा है नदी दिखने मे बहुत ही अच्छे लगते है ढेर सारी पानी है।